और यहाँ पर देख सकते हैं कैमरा है एक कैमरा मैन है । कैमरा ऐसा यहाँ पे रखा हुआ है और नीचे सशमदरी सब बिझाया गया है । इसमें अच्छी अच्छी क्वालिटी जैसी दिखती --

हम देख सकते है यहां कितनी अच्छी-अच्छी क्वालिटी क्वालिटी की साड़ियां है रंग-बिरंग के।

जो है नीचे भी देख सकते हैं टाइल्स वगैरह इ सब में लगा हुआ फूलदानी सब --

देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंट्रिंग का काम चल रहा है ढलाई का काम चल रहा है देखिये ये बंदा कन्नी से सीमेंट दे रहा है।

यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए केंद्र और भी क्या-क्या वह लिखा हुआ है ।

दोस्तो हम सब लोग बैठे हुए है भीम राव अम्बेडकर जी का।